और ऊपर में लिखा हुआ है एस थी लोटा सलोन के।

छत जो लाल रंग का है।

ई तस्वीर में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

चाय बागान का बीच में बहौत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

एक प्रिंटर मशीन में दिखाई दे रहा है।

घर जो टीना घर है।

आगे में ब्रिटिश पेंट है।

चार ठो जो बैठ के है।

कुर्सी जो ब्लैक कलर का है।

आगे दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

फूल जो लाल कलर का है।

सीढ़ी सफेद कलर का भी है ब्लू कलर का भी है।

ये तस्वीर में एक खेत दिखाई दे रहा है।

ओ का चारों ओर पुरा जंगल हैं।

यहां में बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।